हेलो दोस्तों मुझे यहां एक घर का फोटो है इसमें एक मंदिर है इसमें ये कुछ भगवान खड़े हैं साइड में फूल लग रहे हैं।

गार्ड के बैठने की टेबल रखी हुई हैं और कुर्सी भी है।

उंगली पे पर्वत उठाएं खड़े हैं उसके नीचे गाएं और कुछ औरतें खड़ी है यहां पर लाइट बोर्ड लगे हुए --

कर सकता हैं इसमें पेमेंट उसके अकाउंट से कट कर दुकान वाले के अकाउंट में पेमेंट जल जाएगा --

यहां पर तीन तरह के पत्ते हैं जिनमें काफी सारे महक आ रही हैं और यहां पर काफी सारी --

यहां पर विजय सिंह गोल भी है और यहां पर एक अंडर पास भी दी है जो इस रोड से दूसरे रोड पर जाने के लिए बनाया गया है।

हेलो दोस्तों यह एक पौधे का प्लांट है यहां पर काफी सारे यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और यहां पर ये --

हैलो दोस्तो यहाँ एक गार्डन का दृश्य है यहाँ पर घूमने की बहुत बढियां जगह है यहाँ पर काफी सारी चेयर्स रखी गई है।

और यहां बस हमारे ऑल राजस्थान में चलती हैं यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है बस का नंबर है बी_आर ग्यारह --

और यहां पर बैठने की भी जगह है यह एक बस स्टॉप है जैसी की हम देख सकते हैं।

और यहां पर साइड में बिजली के कम पोल भी हैं उस पर लाइट के तार हैं और यहां पर लोग भी बहुत हैं।

यहां पर कई सारे लोग आइसक्रीम खा भी रहे हैं और कोई लेकर जा रहा है धन्यवाद।

यहां पर एक होटल राजमहल रेस्टोरेंट हैं जो की--

यहां पर ऑरेंज वाइप्स भी खड़े हुए हैं यहां पर काफी सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं।

और यहां पर काफी सारे रंग बिरंगे लाइट्स लगी हुई है।